यूको बैंक है जहाँ की आप यूको बैंक चेंज कर सकते हैं | ये बेगुसराई की सीन है जहाँ की यूको को श्रेय दिय गई है बाइक लगी हुई है और

नयन रथ जहां की ढेर सारी बसें लगी हुई है और एक बस पर लिखी हुई है नयन रथ जो की नयन बहुत ही प्यारा नाम है।

यहां शायद बस स्टैंड है और बहुत सारे लोग हैं एक पक्की रोड है जो की बहुत अच्छी रोड है।

यह सैलून है विजय हेयर कटिंग जहाँ की एक छोटे से रूम है और इसी में हेयर कटिंग की जाती है और अच्छी सी कटिंग कम दामों में कर दी जाती है।

इ ब्यूटीफुल जोन है जहां कि आप यहां लड़की तैयार की जाती है प्रमोद हेयर कटिंग सैलून जहां की जेंट्स की भी हेयर कटिंग की जाती है।

ये सैलून है जहाँ की आप हेयर कटिंग करा सकते हैं| जहाँ लेडीज भी इन कटिंग करा सकती हैं ढेर सारे लोग भी हैं तरह-तरह के सैलून है।